यहाँ पर एक शॉप है जिसके सामने एक बाइक है ब्लैक कलर की बाइक है और एक व्यक्ति बाइक को उम्म-म चेक कर रहा है एक व्यक्ति बैठा हुआ है --

व्हाइट कलर की प्लेट है ओर चारों प्लेटों में चम्मच रखे हुई है ओर एक प्लेट में कुछ भी नहीं है ओर तीन प्लेटों में यहाँ कुछ चावल जैसे रखे हुए है कटोरा में भी कुछ रखा हुआ हैं।

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लेडिस बैठी है कुछ खड़ी है और कुछ पूजन जैसा चल रहा है।

खाली तसले रखी हैं स्टील के दो और पूजन की सामग्री दिख रही है शामने एक दादा--

यहाँ पर एक कपड़ों की शॉप है जिसमे रंग-बिरंगे कपड़े दिखाई दे रहे हैं शाइड में रेड कलर की और ब्लैक कलर की फ्रॉक दिख रही है।

यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है जिसके किनारे पर कुछ व्यक्ति लेडिश खड़े दिखाई दे रहे है।